अपने फैमिली के साथ खा पी रहे हैं।

पैंट है शूज ब्लैक है वाइट --

पेंट वाइट ऊपर से किया है रेड में नीचे पेंट किया है डेस्क बेंच है सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।

और बैठने के लिए चेयर भी है।

ग्राउंड है गेट है उसपे लिखा है ब्लू कलर में रक्त कबीर --

इस स्काई ब्लू आसमान दिख रहा है।

खड़ी है वाइट कलर की स्काई --

तम्बाकू उम्बाकू हर एक चीज यहां पे मिल मिलता है।

व्हाइट कलर से लिखा है और ब्लू में खंभा है चेयर भी है वाटर भी यहां पे --

सिल्वर कलर से है यहाँ पे डिस्को ।

यहाँ पे एक ग्राउंड है। हर प्रकार का यहाँ पे झंडा है। ब्लू कलर का गेट है।

यहाँ पे निचे जो है पांच साई की राइ का झाड़ा है उसको झाड़ू से साफ़ कर रहा है आदमी और नहीं लेडीज दिख रही है।

बड़ी बिल्डिंगे है इमारत है रिक्शा भी चल रहे है।

शिप हैं शिप पे ए.सी. लगा है हर प्रकार की सुविधाएँ हैं। दो --

खाते भी है और ब्लैक में बड़ा-बड़ा मछी है सब खून लगा है काट के रखे है सब लाइट भी जल रही है।

शर्ट पहेन के और व्हाइट धोती पहेन के है लेडीज भी जा रही है साइकल भी खड़ा है।

मार्किट में सब आ जा रहे है।